इस की ईमारत का रंग हल्का सफ़ेद है |

इस का मुख्य द्वार भी देखा जा सकता है।

इस चित्र में एक चार पहिये वाला वाहन --

इस वाहन के किनारे पे कुछ वृक्ष भी देखे जा सकते हैं ।

इस चित्र मे कुछ टोकरिया दिखाई दे रही है ।

साथ मे समुंदर को भी देखा जा सकता है |

पुस्तकों की एक दुकान भी देखी जा सकती है ।

पुचका लाल दिखाई दे रहा है।

कई प्रकार की कलाकृति की गई है।

चित्र में एक चिकित्सालय दिखाई दे रहा है इस चिकित्सालय का मुख्य --

नज़र आ रहे हैं | इन वाहनों का कुछ कारण --

कुछ बाग दिखाई दे रहे हैं | इन बागो में --

कई प्रकार की खाने की --

देखे जा सकती है इन शिलाओं के किनारे पर --

बस के समीप कुछ वृक्ष भी है।